वेक्टर ऑपरेशन के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे
एक वेक्टर को परिभाषित करने में
एक वेक्टर की लम्बाई की गणना करने में
वेक्टर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसेएडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन करना
एक मेट्रिक्स को परिभाषित करने में
मेट्रिक्स के आकार की गणना करना
मेट्राइसिस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसेएडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन का प्रदर्शन करना
इसकी पूर्व आवश्यकतायें यह है कि आपके सिस्टम पर scilab इंस्टॉल होना चाहिए
आपको getting started with scilab पर स्पोकन ट्यूटोरियल को सुना हुआ होना चाहिए
आपको vectors और matrices की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए
मैं प्रदर्शन के लिए windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम तथा scilab 522 का प्रयोग कर रहा हूँ
scilab लांच करने के लिए अपने डेस्कटॉप पर scilab शॉर्टकट पर क्लिक करें
यह scilab console विंडो को खोलेगा
ध्यान दें कि कर्सर command prompt पर हो
मैं सुझाव देता हूँ कि आप इस वीडियो को समय के नियमित अंतरालों पर रोकरोककर साथसाथ scilab में इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करें
अब वेक्टर को परिभाषित करने के साथ शुरू करें
यह दो तरह से किया जा सकता है:
स्पेस का प्रयोग करके जैसे p is equal to स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
या कॉमा का प्रयोग करके जैसे q is equal to स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 कॉमा 3 कॉमा 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
हम वेक्टर p की लम्बाई ज्ञात कर सकते हैं कमांड length of p का प्रयोग करके और एंटर दबाएँ
हम वेक्टर्स पर विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रदर्शन कर सकते हैं जैसे कि
दो वेक्टर्स का एडिशन
दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन तथा अन्य
एक वेक्टर का ट्रांसपोज apostrophe जिसे सिंगलकोट के नाम से भी जाना जाता है का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है
p ट्रांसपोज यहाँ प्रदर्शित किया गया है
हम ptranspose times q की गणना कर सकते हैं:
कमांड p times qtranspose का परिणाम एक स्केलर प्राप्त होता है:
कृपया अब ट्यूटोरियल रोक दें तथा वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या1 को हल करने का प्रयास करें
अब हम देखेंगे कि मेट्रिक्स को कैसे परिभाषित किया जाता है
एक मेट्रिक्स की एक रो के एलिमेंट्स को एक वेक्टर के लिए दिखाए गए के समान ही स्पेस या कॉमा का प्रयोग करके परिभाषित किया जा सकता है
उदाहरण के लिए टाइप करके एक 2 by 3 matrix p को परिभाषित करते हैं p is equal to स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 2 स्पेस 3 सेमीकोलन
4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
ध्यान दें कि मेट्रिक्स की अगली रो को परिभाषित करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग किया गया है
याद रखें कि scilab केस सेंसिटिव है
यहाँ मेट्रिक्स को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त वैरिएबल p का upper case में प्रयोग किया गया है
जो स्मॉल p से भिन्न है जो एक वेक्टर था
क्या आप जांच करना चाहेंगे कि इस बिंदु पर स्मॉल p क्या है
अब हम देखेंगे कि size कमांड का प्रयोग करके एक मेट्रिक्स का आकार कैसे ज्ञात किया जाता है
इसके लिए टाइप करें स्क्वायर ब्रैकेट खोलें रो कॉमा कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें is equal to size of capital p जो मेट्रिक्स है और एंटर दबाएँ
आपको निम्नलिखित आउटपुट प्राप्त होता है
ध्यान दें कि length कमांड मेट्रिक्स में एलिमेंट्स की कुल संख्या प्रदान करेगा जैसा कि आप देखते हैं
ट्रांसपोज कमांड मेट्राइसिस के लिए काम करता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है :
p ट्रांसपोज मेट्रिक्स p का ट्रांसपोज प्रदान करता है
अब एक 2 by 3 मेट्रिक्स q को परिभाषित करते हैं:
कैपिटल q is equal to स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 स्पेस 5 स्पेस 3 सेमीकोलन अगली रो row में एंटर करने के लिए
2 स्पेस4 स्पेस 8 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएँ
अब p को एक बार और दोहराते हैं:
हम p और q को शामिल करते हुए बिलकुल वैसे ही गणना कर सकते हैं जैसे हम गणित में करते हैं
उदाहरण के लिए हम गणना करते हैं e is equal to 2 times p plus 3 times q और एंटर दबाएँ:
आप जाँच कर सकते हैं कि ये गणनायें सही हैं या नहीं
कृपया अब ट्यूटोरियल रोक दें तथा वीडियो के साथ दी गई प्रश्नावली संख्या 2 को हल करने का प्रयास करें
इस tutorial में हमने सीखा
कॉमा या स्पेस का प्रयोग करके वेक्टर को परिभाषित करना
length फंक्शन का प्रयोग करके वेक्टर की लम्बाई की गणना करना
apostrophe का प्रयोग करके वेक्टर या मेट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करना
कॉलमों को अलगअलग करने के लिए स्पेस या कॉमा का प्रयोग करके तथा रोज़ rows को अलगअलग करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग करके एक मेट्रिक्स को परिभाषित करना
size फंक्शन का प्रयोग करके मेट्रिक्स का आकार ज्ञात करना
यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन fossee द्वारा बनाया गया है
fossee प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी fosseein या scilabin से प्राप्त की जा सकती है
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिये धन्यवाद अलविदा